यह एक टेबल है ये ऑफिस है ऑफिस में टी_वी लगा हुआ है।

में एक जाली का गेट लोहे का गेट बना हुआ है जाल-जाल-जाल सा बना हुआ है अभी मिट्टी-मिट्टी है अभी कंस्ट्रक्शन वर्क में है।

दो जने बैठे हैं ब्लू कलर का रिफ्रेशर्स है ऊपर लाइट्स लगी हुई है पौधे पड़े हैं।

चेयर्स में बैठ बैठ सकते हैं खाना खा सकते हैं।

यहां पे हम श शॉपिंग करते हैं।

यहां पे लोग पूजा कर रहे हैं वहां पे एक पौधा भी लगा हुआ है बहोत सारी भीड़ हो रखी है।

लोहे की रॉड पड़ी है बहुत सारी जिसमें आग लगती है चिकन सेकते हैं।

व्हाइट कलर की दीवार है येलो कलर की दीवार है और लोहे की जाली बनी हुई है।

यह एक सुंदर नजारा है ऊपर से क्लाउड्स हैं बादल छा रखे हैं नीला आसमान हो रखा है।

और एक बहुत सारे स्विचस भी हैं ऊपर से वायर निकल रही है और एक टेबल में पड़ा है।

और लड़कियां भी खड़ी हैं वहां पे।

यह एक बहोत बड़ी जगह है जहां पे इतनी सारी सीढ़ियां बनी हुई है।